विद्याधौर अंजुर है अदेस के विद्यार्त हैं।

चैर का हैया है हुमन के मोज्किल्ले हैं इल्ल का कटिंग हैं कर्ल का लेडी हैं।

इसका फ़ाउंडेशन का घर होता है सो मेनी ड्रेस का-- ]

स्टेज का डांन्स का स्टेज येरी पोरा है देखना है। --

जैवेन का देश भारता हैं चिका शहर का जान है राष्ट्रपति का महत्या गांधी है। मेरा भात महान है।